यह एक यूनिसेक्स सैलून का चित्र है जिसमें एक लड़की चेयर पर बैठ कर सेल्फी ले रही है लड़की ने पर्पल कलर की टॉप --

और यह गेट खुलने का वेट कर रहे हैं बैंक के |

यह एक एयरपोर्ट का चित्र है जो की लोग चेकिंग करके अंदर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।

दो केबिन बने हुए हैं जो की रेस्ट रूम हैं।

यह किला एक बहुत पुराना किला है इसके आसपास हर जगह ग्रीन हरियाली पेड़ पौधे इत्यादि हैं।